एक गमला नजर आ रहा है।

एक ब्रिज बना नजर आ रहा है।

दिख रहा है बोर्ड लगा हुआ है स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है।

बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है जिस पर--

स्ट्रीट लाइट नजर आ रही है।

बहुत बड़ा मैदान नज़र आ रहा है।

मैच खेल ते दिखाई दे रहे हैं।

शूज के डब्बे नजर आ रहे है।

गेट लगा हुआ नज़र आ रहा है बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।